उसमें रस्सी से उन पेड़ों की डिज़ाइन करी गयी है।

जिसमे लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए है और एक औरत --

उस दीवार में दो तलवारे है।

छत तकारिसि हो रही है जिसमे डिज़ाइन बनी हुई है छोटे-छोटे --

और राधा जी और कृष्ण जी एक एक हाथ से मुरली पकड़े हुए है।

लेकिन मूर्ति राधा कृष्ण की काफी सूंदर दिखाई दे --

जैसा की आप देख पा रहे है सामने की ओर पहाड़ खाई सी है।

सिनेमा हॉल काफी बड़ा है और अभी कोई पिक्चर नहीं लगी है।

पूरा पत्थर पत्थर है उसी पत्थर में छोटे-छोटे पेड़ पौधे --

पेड़ दिखाई दे रहा है तार दिखाई दे रहे है।

अ सींग सा दिखाई दे रहा है।

जिसमे दो आँखे है नाक है।

जैसा की आप देख पा रहे है सामने की ओर हिरण दिखाई दे रही है।

हिरण चार है उनके सींग काफी बड़े-बड़े है।